इस इमेज में हमें एक ट्रक दिखाई दे रहा है इस इमेज में दो ट्रक के टायर है इस इमेज में हमें वाइट कलर का ट्रैक है बहोत अच्छा कलर लग रहा है इस इमेज में --